यह चारों तरफ नेट से जाली बिछाए हुए हैं।

यहां बहुत घने जंगल दिखाई दे रहे हैं।

यह एक सरकारी ऑफिस की तरह दिखाई दे रहा है।

और वॉल पर ईट नंबर लिखे हुए हैं।

ये बाइक पर दो लड़--

अ व्यक्ति सिर पर हेलमेट लगाए हुए हैं इधर तीन व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं।

वहां पर बहोत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यह फूड ट्रैक एक रेस्टोरेंट या होटल के जैसा प्रतीत होता है।

चारों तरफ शीशे के ग्लास लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक महात्मा गांधी प्राशासनिक भवन है।

यहां पर दो ए_सी लगे हुए हैं।

यह डेजी फूल है डेजी फुल का कलर व्हाइट और हल्का सफेद है।

दीवाल सफेद कलर का है बगल में छोटे छोटे हरे हरे घास लगे हुए हैं।